तस्वीर के अंदर पानी में हमें महिलाएँ दिखाई दे रही हैं।

और फल रखे हुए हैं और पूजा का सामान रखा है।

बड़े से टेबल और कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं।

हमें गमले लगे और एक सफेद मकान--

हमें दिखाई दे रही है इस तस्वीर में अलमारी के अंदर--

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है सफेद--

एक बड़ी सी टेबल पर लगे दिख रहे हैं।

दिखाई दे रही है आदमी है महिलाएँ हैं।

हमें एक बड़ा सा मीनारा दिखाई दे रहा है।

हरा पेड़ लगा हैं और एक मस्जिद हमें--

सड़क और घास हरी हरी दिख रही है।

हमें दिखाई दे रही है एक दुकान है मिठाइयों की।

पाल द फैमिली ढाबा का बोर्ड लगा है।

तस्वीर के अंदर हमें बड़ी सी बिल्डिंग सफेद रंग की बनी हुई नज़र आ रही है।

एक स्ट्रीट लाइट लगी है और उस पर बड़ा सा पोस्टर लगा है।

पीपल्स हॉस्पिटल लिखा हुआ हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक पीले कुर्ते पजामे में आदमी खड़ा है।

और मैदान में लोग दिखाई दे रहे हैं।

और गाड़ी खड़ी है एक बाइक वहाँ--

हरे पत्ते ऊपर लटक रहे हैं पेड़ के--

और एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें हरी हरी घासों पर--

वहाँ बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

एक और हरा ऑटो जिसमें एक आदमी बैठा है।

गाड़ियाँ हमें खड़ी नज़र आ रही हैं।

हरा हरा पेड़ हमें हरे हरे--

एक हमें दिखाई दे रहा है स्टूल रखा है।

हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीला-नीला आसमान है।

हमें रथ अ ए दिखाई दे रहा है उनका।

सफेद और नीला एक बड़ा सा प्लेन खड़ा है।

कार एक खड़ी है और दूर भी हमें--

और उस ट्रे में रखा खाना हमें नज़र आ रहा है।

लाल काली कुर्सियाँ और टेबल लगे हैं।

पीछे हमें मूर्ति नजर आ है गोल्डन --